ये एक डैम का फोटो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डैम है और नदी है एक पुल भी है जो कि इस पार से उस पार जोड़ रहा है।